पीछे बहुत सारे कुलर फ्रीज रखे हुए हैं दीवाल है दीवाल सफेद रंग की है।

पास में बहुत सारा सामान रखा हुआ है लोटा रखा हुआ है।

एक मकान है मकान के सामने एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है जो नीले रंग में--

एक आदमी है जिसने सफेद बनियान पहन रखी है सामने बहुत सारे शीशे लगे हुए हैं।

लोहे की सीढ़ी बनी हुई है नीचे कमरा बना हुआ है जिसमें दरवाजा लगा हुआ है।

अंदर एक कमरा सा बना हुआ जिसके बाहर एक लोहे का हरा गेट लगा हुआ है।

एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसकी दीवाल का रंग पीला है जिसमें खिड़कियां लगी हुई हैं जिसमें जाली लगी हुई है।

यह एक गार्डन है गार्डन में बहुत सारी क्यारियां बनी हुई है जहां पे मिट्टी पड़ी हुई है जहां पर छोटे छोटे हरे पेड़ लगे हुए हैं।